तेज चमक रहा है और पूरा आसमान में उसकी रोशनी से तरंगे बिखेर रहा है।

इस तस्वीर में हमें यह दिखाया जा रहा है कि यह कोई रास्ता--

और अगल-बगल सब कुछ सामान रखा हुआ है और लाइट कम मात्रा में है।

आसमान हल्का बादल जैसा दिख रहा है और नीचे का फ्लोर साफ नहीं है।

अगल-बगल दूर- दूर पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग दौड़ रहे हैं।